सफेद और ब्राउन कलर से हाल पुता हुआ है।

दिख रहा है दो बाइक खड़ी हुई हैं एक काले रंग की है।

एक नीले रंग की बाइक दिख रही है।